यहाँ इस तस्वीर में बहुत सारी मछलियाँ दिख रही है जो की एक बाजार की है जहाँ पर मछलियाँ बिक्री की जाती है और ये मछलियाँ पूरे पंद्रह पीसों में हैं।

यहाँ पे छोटे-छोटे चार्ट पेपरों से बना ढ़ेर सारी खिलौने हैं जो की एक स्कूल में सबमिट किये जाते हैं।

और इस स्विमिंग पूल पे सभी स्विमिंग करना सीख सकते हैं।

और यह दरवाजा घर की आगे की मैन गेट है।

हम देख पा रहे हैं एक समुद्र है समुद्र से निकाली गई मछलियॉ दिखाइ दे रही हैं जिसे --

यहाँ पे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं यह एक जिम है और इस जिम में एक पुरुष अपना लेग का एक्सरसाइज कर रहा है।

यह एक जहाज बोट का स्टेशन है जहाँ जो की समुंदर में चलता है।

यहां पे हम देख पा रहे है एक जिम नजर आ रही है और इस जिम में एक पुरुष अपना एक्सरसाइज कर रहा है।